लिबर ऑफिस में सेल्स और शीट्स के साथ कार्य पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रोव्स तथा कॉलम को जोड़ना और डिलीट करना
शीट्स को जोड़ना और डिलीट करना
शीट्स को फिर से नाम देना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
इस ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि स्प्रैडशीट में रोव्स और कॉलम को कैसे जोड़ना है
चलिए हमारी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल को खोलते हैं
कॉलम तथा रो को अलग अलग या समूह में जोड़ सकते हैं
स्प्रैडशीट में यदि एक रो और एक कॉलम को जोड़ना है तो पहले सेल को चुनें और फिर कॉलम और रो को चुनें जहाँ आपको नई कॉलम और रो जोड़नी हैं
उदाहरण के लिए हमारी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल में पहली रो में कहीं क्लिक करते हैं
मैं उस सेल पर क्लिक करता हूँ जिसमें कॉस्ट लिखा है
अब मेन्यूबार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर रॉस पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि चुनी हुई रो के ऊपर एक नई रो जूड़ गई है
उसी तरह से एक नई कॉलम को जोड़ने के लिए मेन्यूबार में इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और फिर कोलम्न्स बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि चुनी हुई सेल कॉलम के पहले एक नया कॉलम जूड़ गया है
जो बदलाव हमने किए थे उन्हें अन्डू करते हैं
यदि आपने अक्षर पर क्लिक करके कॉलम को या नम्बर द्वारा रो को चुना है जो इसको पहचानता है फिर राइट क्लिक करें और एक कॉलम या रो को जोड़ने के लिए नई ड्रॉपडाउन मेन्यू में से इंसर्ट कोलम्न्स या इंसर्ट रॉस ऑप्शन चुनें
वैकल्पिक रूप से सेल पर कर्सर से क्लिक करके उसका चुनाव करें
फिर राइट क्लिक और इंसर्ट ऑप्शन चुनें आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा
एक रो और कॉलम को जोड़ने के लिए एंटायर रोव और एंटायर कोलम्न ऑप्शन चुनें
एक ही समय पर विभिन्न कॉलम और रो जोड़ने के लिए प्रारंभिक सेल पर लेफ्ट माउस बटन पकड़कर आवश्यक कॉलम और रो को स्पष्ट करें और आवश्यक सेल्स तक ड्रैग करें
यहाँ हमने 4 सेल चिन्हांकित किए हैं
रो और कॉलम को जोड़ने के लिए बताए गए तरीकों में से किसी का भी अनुसरण करें
मैं नई रोव्स जोड़ना चाहता हूँ
इसलिए मैं चुनें गए ऑप्शन पर राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन चुनूँगा
अब मैं एंटायर रोव ऑप्शन चुनूँगा
ओक बटन पर क्लिक करें
देखें कि पहले चुनें गए रोव्स के ऊपर 4 नई रोव्स जुड़ गई हैं
अब हम सीखेंगे कि कॉलम को अलग अलग या समूह में कैसे डिलीट करें
एक रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए पहले उस कॉलम या रो को चुनें जिसे डिलीट करना चाहते हैं
उदाहरण के लिए यदि आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं जिसमें लॉन्ड्री लिखा है पहले उस कॉलम में एक सेल पर क्लिक करके उसे चुनें
अब सेल पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें
डिलीट सेल्स हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
अब Shift सेल्स यूपी ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि सेल डिलीट हुए हैं और इसके नीचे के सेल शिफ्ट होकर ऊपर आता हैं
इस बदलाव को अन्डू करते हैं
अब हम सीखेंगे कि एक ही समय में विभिन्न कॉलम या रो को अलग अलग या समूह में कैसे डिलीट करें
उदाहरण के लिए यदि आपको रो डिलीट करनी है जिसमें लॉन्ड्री लिखा है पहले उस सेल को चुनें जिसमें उसका सीरियल नम्बर है जो है 6
अब इस सेल पर लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके पूरी रो पर ड्रैग करें
या तो उस रो नम्बर पर क्लिक करें जिसे डिलीट करना है
पूरी रो चिन्हांकित होती है
सेल पर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें
डिलीट सेल्स नामक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा
अब Shift सेल्स यूपी ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि पूरी रो डिलीट होती है और उसके नीचे वाली रो ऊपर आ जाती है
उसी तरह से कॉलम को चुनकर डिलीट कर सकते हैं
जो हमने बदलाव किए उन्हें अन्डू करते हैं
शीट में कैसे विभिन्न रो तथा कॉलम को कैसे जोड़ें और डिलीट करें यह सीखने के बाद अब हम सीखते है कि कैल्क में शीट्स कैसे जोड़ें और डिलीट करें
कैल्क में नई शीट जोड़ने के कई तरीके हैं
एक एक करके सबके बारे में सीखते हैं
सभी तरीकों के लिए पहले स्टेप है कि उस शीट को चुनें जिसके बाद अगली नई शीट जोड़नी है
अब मेन्यूबार में इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट पर क्लिक करें
इंसर्ट शीट हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है
अब अपनी वर्त्तमान शीट के बाद नई शीट को जोड़ने के लिए आफ्टर करेंट शीट रेडियो बटन को चुनते हैं
नामे के जगह पर हमारी नई शीट का नाम शीट 4 दर्शाया गया है
यह नाम सिस्टम द्वारा दिया गया है
आप चाहें तो बदल कर दूसरा नाम दे सकते हैं
अब ओक बटन पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि हमारी वर्त्तमान शीट के बाद नई शीट जुडी है
एक अन्य तरीका नई शीट जोड़ने का यह है कि कैल्क विंडो के बाएं ओर नीचे वर्त्तमान शीट टैब पर राइट क्लिक करें इंसर्ट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप स्थान शीट्स की संख्या नाम चुन सकते हैं और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
परिणामस्वरूप यह शीट जोड़ेगा
एक अन्य सरल तरीका वर्त्तमान शीट के बाद नई शीट जोड़ने का यह है कि शीट टैब के बाद दिए गए एड शीट बटन पर क्लिक करें जिसे प्लस चिन्ह द्वारा बताया गया है
इस पर क्लिक करने से क्रम में एक नई शीट पिछली शीट के बाद जुड़ जाती है
आखिरी तरीका नई शीट को जोड़ने का यह है कि इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स पर जाकर नीचे शीट टैब में एड शीट प्लस चिन्ह के बगल में खाली जगह पर क्लिक करें
खाली जगह पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ता है
आप डायलॉग बॉक्स में शीट की जानकारी एन्टर कर सकते हैं और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
शीट्स को कैसे जोड़ें यह सीखने के बाद हम सीखते है कि कैल्क में शीट्स कैसे डिलीट करें
शीट्स अलग अलग या साथ में डिलीट कर सकते हैं
सिर्फ एक शीट को डिलीट करने के लिए जिस शीट को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करें और फिर पॉप अप मेन्यू में से डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि शीट डिलीट हुई है
एक विशिष्ट शीट को डिलीट करने का अन्य तरीका है कि मेन्यूबार में से एडिट ऑप्शन का उपयोग करें
उदाहरण के लिए यदि हमें शीट 3 डिलीट करनी है मेन्यूबार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें
अब पॉप अप मेन्यू में से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते है कि शीट डिलीट हुई है
अब डॉक्युमेंट में जो बदलाव हुए है उन्हें अन्डू करते हैं
विविध शीट को डिलीट करने के लिए उदाहरण के लिए यदि हम शीट 2 और शीट 3 डिलीट करना चाहते हैं तो पहले शीट 2 टैब पर क्लिक करें और फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट की प्रेस करके रखें और शीट 3 टैब पर क्लिक करें
अब किसी भी एक टैब पर राइट क्लिक करें और पॉप अप मेन्यू में से डिलीट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन क्लिक करें
आप देखते हैं कि दोनों शीट डिलीट हुई हैं
आगे सीखने के लिए चलिए हमने जो बदलाव किए है उसे अन्डू करें
मेन्यूबार से एडिट ऑप्शन का उपयोग करके एक विशिष्ट शीट को डिलीट करने का एक अन्य तरीका है
उदाहरण के लिए यदि हम शीट 6 और शीट 7 डिलीट करना चाहते हैं मेन्यूबार में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें
अब पॉप अप मेन्यू में सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स जो नज़र आता है उसमें शीट 6 ऑप्शन पर क्लिक करें और कीबोर्ड पर Shift बटन पकड़कर शीट 7 ऑप्शन क्लिक करें
ओक बटन पर क्लिक करें
यह शीट्स का चुनाव करता है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं
अब फिर से मेन्यूबार में एडिट ऑप्शन क्लिक करें और फिर शीट ऑप्शन पर क्लिक करें
अब पॉप अप मेन्यू में डिलीट ऑप्शन क्लिक करें और फिर येस ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि चुनी हुई शीट्स डिलीट होती हैं
कैल्क में शीट्स कैसे डिलीट करें यह सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि स्प्रैडशीट को दुबारा नाम कैसे दें
यदि आप स्प्रैडशीट में देखते हैं विभिन्न शीट्स डिफॉल्ट रूप से शीट 1 शीट 2 शीट 3 द्वारा नामित हैं
यह छोटे स्प्रैडशीट में काम करता है जिसमें थोड़े से शीट्स हों लेकिन मुश्किल तब होती है जब बहुत सारी शीट्स होती है
कैल्क हमें अपनी पसंद के अनुसार शीट का नाम बदलने की अनुमति देता है
अब उदाहरण के लिए शीट 4 का नाम बदलकर डम्प रखना है तो ऐसा आप शीट 4 टैब पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं
आप देखते हैं कि रिनेम शीट हेडिंग के साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है
यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें डिफॉल्ट रूप से शीट 4 लिखा है
अब डिफॉल्ट नाम डिलीट करें और नई शीट को डम्प नाम दें
ओक बटन पर क्लिक करें और आप देखते हैं कि शीट 4 टैब का नाम बदलकर डम्प हो गया है
चलिए शीट्स 5 और डम्प को डिलीट करते हैं
अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः रो और कॉलम को जोड़ना तथा डिलीट करना
शीट्स को जोड़ना तथा डिलीट करना
शीट्स को फिर से नाम देना
व्यापक नियत कार्य
स्प्रेडशीट practiceओडीएस फाइल खोलें
सीरियल नंबर हेडिंग वाली रो को चुनें और डिलीट करें
शीट को फिर से नाम दें डिपार्टमेंट शीट
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद